--और वहाँ पे लाइ-ट्स भी लगी हुई है जो की बहुत ही अच्छी है और वहाँ पे लोग काफी ज्यादा मात्रा में है और तरह-तरह के कपड़े पेहने हुए है और काफी पर्सन है।

यह एक रेस्टोरेंट है जहां पर टेबल और चेयर भी लगे हुए हैं और वहां पर तरह-तरह की लेटेस्ट भी लगी हुई है।

यह किताब भी अच्छी है और वहां पर कलरफुल भी है और ऊपर की जो है वह वाइट कलर से हुआ नीचे की फोर्स भी काफी अच्छा है साफ सुथरा है।